दुकान में बहुत सारी कुर्सियां बिकती हैं और दो बक्से भी रखे हुए हैं।

सो के ऊपर दो गड्ढे हैं और इधर भी कुछ पनी पली से झपा हुआ है।

बैनर उस तरफ भी लगा हुआ है और जालियों का भी लगा हुआ है।

चौराहा एक पीला और लाल है और चारों तरफ छोटे छोटे फुलवारी जैसी बनी हुई हैं।

पार्क में दो तीन चार झूले भी हैं और कुछ छोटे छोटे झूले भी दिखाई पड़ रहे हैं।

और कुछ पेड़ भी दिखाई पड़ रहे और तुम बिल्कुल साफ गार्डन पड़ा हुआ है।

एक गेट गेस्ट हाउस में शादी हो रही है और इसमें दो लेडिस और तीन जेंट्स हैं।

यह एक तलाब जैसा बना हुआ है और इधर एक हरा हरा उसमें पानी दिखाई पड़ रहा है।